यहां पर बोहोत सारे ट्रैक्टर रखे हुए हैं जो नीले रंग के हैं।

यहां पास ही में बहुत सारे हर बड़े पेड़ भी लगे हुए हैं।

यहां पर एक फ्रिज रखा हुआ है जिस पर ब्लू स्टार लिखा हुआ है।

जो कुछ सफेद और कुछ चॉकलेट कलर की है।

यह एक भवन बना हुआ है जिसमें नीला पीला और कत्थई रंग पोता हुआ है।

और पास ही में बहुत बड़ी जाली बनी हुई है जिसमें बहोत सारे छेद हैं।